जे के दोनों साइड खिड़कीया लगी हुई हैं और उन्हीं खिड़कियों के पास मैं और भी खिड़कियां लगी हुई हैं ऊपर पंखे लगे हुए हैं कुछ गोल पंखे लगे हुए हैं।

पड़ी है बेंच बेंच के ऊपर बॉटल पड़ी है किताब पड़ी है बेंच के नीचे दो कुर्सियां पड़ी हैं ब्लैक कलर की ऊपर पंखे लगे --

कीबोर्ड बड़ा है एक आदमी बैठा है कुर्सी के ऊपर पीछे दरवाजा बना हुआ है लकड़ी का--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

इधर से एक सड़क निकल रही है सड़क के ऊपर एक गाड़ी और दो चार मोटरसाइकिल खड़ी है।

लाइट वाले तार ऊपर से जा रहे हैं।

आस पास गमले पड़े है पौधे लगे हुए है सामने कुछ मालाएं टंगी हुई है ऊपर एक चार्ट बना हुआ है।

उसके ऊपर लिखा हुआ है ए ओम डेकोर मेंटल आर्ट्स हैंडक्राफट आइटम व लॉक्स --

और बाहर है जो किताबों का सेट बंधे हुए है।